जिसके बाजू यूनियन बैंक भी दिखाई दे रहा--

साइड में एक वाइट कलर की बिल्डिंग है जिसमें दो खिडकी बने हुए है।

साइड में एक येलो कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है जिसमें ब्लैक कलर के लोहे की खिड़की हैं एक भूरे रंग का टीना दिखाई दे रहा है।

सामने एक बैंक नजर आ रहा है जिसके वाल का कलर व्हाइट और रेड है ऊपर टीना बिछा हुआ है लकड़ी के बास से अटैच है।

सामने एक मंदिल नजर आ रहा है जिसके अंदर लोग जाते हुए दिखाई दे रहे है बड़े बड़े खम्बे न--

बहोत सारी ग्रे कलर की चेयर नजर आ रही है सामने ब्लैक कलर की बोर्ड में इनक्रेडिबल थ्रीडस लिखा हुआ नजर आ रहा है।

सामने दीवाल दिखाई दे रहा है जिसका कलर ग्रीन और वाइट है दीवाल में पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे है साइड में ए_सी लगी हुई दिखाई दे रही है।

एक बड़ा सा व्हाइट कलर का बिल्डिंग नजर आ रहा है जिसमें लाइट लगे हुए हैं लोहे की खिड़की दिखाई हुई दे रही है एक बड़ा सा स्विमिंग पूल नजर आ रहा है जिस पर लोग--

एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है सामने की दीवाल में पोस्टर लगा हुआ है।

लोहे की टेबल नजर आ रहे हैं जिस पर लोग बैठकर खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आदमी सर्व कर रहा है।

येलो कलर की बॉर्डर बने हुए दिखाई दे रहे हैं पंखा लगा हुआ है जिम के बहोत सारी मशीने लगी हुई दिखाई दे रही है।

जिसके बहुत सारे फल नजर आ रहे हैं प्लास्टिक के खाने बने हुए हैं।